और यहाँ पे आसमान दिख रहा है।

और ये आदमी दिख रहे हैं ये औरत दिख रही हैं।

यहां पे छोटी बड़ी हर तरह की साइकल दिख रही है।